और यहाँ पे चैनल लगा हुआ है एक पोस्टर लगा हुआ हैं घर के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है आसमान नीला दिखायी दे रहा है और यहाँ पर एक छेद है।

आसमान नीला दिखाई दे रहा है और स्कूल के सामने मैदान है।

और इनके अगल-बगल दीवाल हैं जो काले रंग के हैं और खंभे खड़े हुये हैं और मुर्गियों कोई लाल हैं कोई सफेद है कोई काली हैं।

यह एक स्कूल है। इसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर सरीला हमीरपुर है।

एक वैन रखी हुई है और एक गमला रखा हुआ है।

यह आदमी यहाँ पे खाना खा रहे हैं और कुछ आदमी यहाँ खाना दे रहे हैं और इसके चारों और लाइटिंग भी लगी है।

और यहाँ पे कुर्सियाँ है। ये आदमी काला रंग की शीषद पहने है और सोने की चैन पहने हुए है।